एक शालू नाम की भी दूकान है।

बहोत ही बढियाँ बहोत ही लाजवाब।

ठन्डे के मौसम में बंद है ये बहुत ही --

फेस्टिवल है इस लिए लोग --

बहोत ही बढिया तरीके से दे ये दिमाग लगाके बनाया गया है।

कोई पुस्तक वगेरा निकल रहा लग रहा है।

ई कोई शॉप नजर आ रा शाम सुपर मार्केट --

बहुत ही बढ़ियां तरीके से पढ़ायी होती है इसमें।

जबरदस्त तरीके से की गयी है एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

कुछ प्रतियोगिता चल रही है।

बहोत ही नाम करेंगे ये आगे चल --

ये रास्ता बड़ा सुनसान है और पास में नदी भी बह रही है। देखो इसके ऊपर ब्रिज बना है।

बिस्वकर्मा बिज भंडार है।

बोहोत ही बड़े-बड़े झूले हैं और यहाँ पे झूला झूला जाता है।